लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ आदमी सेल्फ़ी ले रहा है। पीछे एक आदमी उसी सेल्फ़ी में है।

काटून रखे हुए हैं दो आदमी है एक आदमी चल रहा एक आदमी काम कर रहा है एक आदमी के हाथ में बोतल है वो सर पे गमछा बांधा हुआ है एक आदमी का --

येलो है पेंट लोअर पहना हुआ है बहोत सारे रस्सी इधर उधर गिरे हुए है ट्रे ट्रक है।

कैलकुलेटर रखा हुआ पेन है कैंची है कॉपी है।

ये एक बालू का अटी एयरपोर्ट है जहां पे बहोत सारे आदमी हैं ब्लैक कलर का एक पन्नी लगा हुआ हैं मोटरसाइकल है शाइन है होंडा ।

ये एक चर्च की फोटो है जहां पर जिसेश का फो जिशेष का मूर्ति बना हुआ है साइड में व्हाइट कलर के पोस्टर पे छोटे छोटे--

अक्षर में कुछ कुछ लिखे हुए है ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई है व्हाइट कलर का दीवाल है।

आदमी लोग मछली बेच रहे आदमी लोग मछली खरीद रहे हैं पीछे--

यहां एक घर है घर के बगल में पिलर लगा हुआ है लाल कलर का एक आदमी टी शर्ट पहना हुआ पीछे एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ --

साइड में गाड़ी लगी हुई है नीचे मजौलिया इंडियन लिखा हुआ है।

नीचे बहोत सारी गिट्टी विटटी पड़े हुए हैं आसमान दिख नहीं रहा है व्हाइट कलर का पूरा पेड़ ग्रीन है।